यह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है जिस में--

और दो लड़कों ने यहाँ हाथ में फरसे को ले रखा है इनका प्रयोजन जमीन को खोदना है।

और दो लड़को ने ओ हाथ में ले रखा है इनका प्रयोजन जमीन को खोदना है।

ढेर सारे सूट के कपड़े है ऊपर बड़ी सी एक झालर लागाई गइ है।

हरे भुट्टे रखे गए है जो अभी अभी--

यह एक रेलवे ट्रैक कि तस्वीर है जो नीचे मिट्टी के रोड पर --

अब बगल में बनी है यहाँ सामने कल कौर लिखा हुए है जिसके --

खम्बे हैं जो ट्रेन की तारों को आपस में जोड़ते हैं।

ये एक बस स्टैंड की तसवीर है यहाँ पे सामने दो बसे खड़ी है।

पूरा बंद दिखाई पड़ रहा है।

सामने की तरफ एक बोर्ड है जिसपे आईडिया लिखा हुआ है।

और टाइल्स लगी हुई है और नीचे चटाई बिछाई गयी है।

ये एक किराने की दुकान है उसके ऊपर बैध किराना एंड जनरल स्टोर लिखा हुए है।

थोक एवं चिलर के विक्रेता सुभाष चौक रांधना --

सामने की तरफ नीचे एक खाई दिखाई पड़ रही है जिसकी तस्वीर ली गई है नीचे ढेर सारे पेड़--

यह एक इंडियन ऑइल का पेट्रोल पंप है यहाँ पर--

मार्शल आर्ट की कुछ कृति कर रहे है ऊपर एक काले रंग का पंखा है।

छोटा गमले का पेड़ है।

एक पार्क की तस्वीर है जिसके आसपास ढ़ेर सारे हरे-भरे पेड़ है और बिच में सफ़ेद--

विद्यालय के पेंटिंग का रंग लाल और सफेद है सामाने--

दुकान है नीचे एक मोटर सायकल खड़ी है।

सामने मकान के ऊपर पिलर लगाए गए है जिसके ऊपर से तीन तारें गुजर रही है।

मकान है जिसपे डांस अकैडमी लिखा हुआ है।

दाहिने तरफ एक लोहे का--

ये एक फल की दुकान है जिसके पास ढेर सारे फल दिखाई पड़ रहे है जिसमे आम नासपाती --

ए डा डम बाडा गारी बे इल्ली के टिकी गलो गोड़ाई बे ए कोटे लगाई तुम्बा।

सामने ढेर सारे हरे-भरे पेड़ है नीचे की तरफ और उनके बगल एक रोड है जिसके सामने से एक कार आ रही है।

बाईं तरफ एक ट्रक आकर खड़ी है जिसकी दोपहिये दिखाई दे रहे है।

रैकेट में लगाई गई है सामने कुछ अगरबत्ती दिखाई दे रही है।

कूलर के पंखे दिखाई दे रहे है और निचे एक लाइट लगी हुई है।

कूलर के पंखे दिखाई दे रहे है और नीचे एक लाइट लगी हुई है।

सामने दो खुर्सी है और बगल मे बाई तरफ दो दरवाजे दिखाई पड़ रहे है जाने के लिए --

यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसपे भूत फ़िल्म की एडवरटाइजमेंट की गई है आस - पास ढेर सारे बिल्डिंग है नीचे एक सफेद कार खड़ी है।

दरवाजा खुला हुआ है शटर है।